जो यहाँ पे सब जो आदमी है जो चढ़ा रहा है जो बहोत सारा महिला और बहोत सारा पुरुष है जो देखने में खूबसूरत और शानदार लग रहा है यहाँ पे जो बहोत बढ़िया लग --

देखो एक कर के तड़प रहा है जो देखने में काफी खूबसूरत और शानदार लग रहा है।

बहुत सारा मुस्लमान जो है बैठा हुआ है जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है जो छाता लेकर बैठा है जो धुप लग रहा है। ये सब को जो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में।